यह एक जंगल का दृश्य है।

एरोप्लेन का कलर व्हाइट है एवं इसके चक्के भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पहाड़ का दृश्य है।

एक गैरेज में बहुत सारे पंखे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े घास भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे शटर भी दिखाई दे रहे हैं जो कि लोहे की मदद से बनाए हुए हैं।

यहां पर चट्टान के ऊपर काई भी जमे हुए हैं।

यह एक फर्नीचर दुकान का दृश्य है।

यहां पर पार्क की जमीन में बहुत सारे छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रहे है।

बहुत सारे लाइट भी दिखाई दे रहे हैं जो की पीले कलर के हैं।

यहां पर दुकान के बाहर में एक पोस्टर लिखा लगा हुआ है जिस पर बाबा जनरल स्टोर लिखा हुआ है।

एक युवक दिखाई दे रहा है जो की कपड़ा सजारने करने का काम कर रहा है।

सड़क पे बहोत सारे गाड़ियां भी दिखाई दे रही है एवं यहां पर एक युवक दिखाई दे रहा है जो कि हेलमेट लगाया हुआ है।

दीवाल में भी एक पोस्टर लगाया हुआ है जिस पर मोंगिया स्टील एवं यहां पर एक शेर का चित्र भी बनाया हुआ है।

बगल में एक गाड़ी भी खड़ा है एवं यहां पे एक बगल में दुकान है जिसका शटर बंद है।

यहां पर बहुत सारे टेबल भी लगे हुए है जहाँ पर टेबल लोहे एवं लकड़ी की मदद से बनाये गए है।

दुकान के सीलिंग में लाइट एवं पंखे भी लगाए गए हैं।

झूले में रॉड की मदद से कुर्सियां बांधी गई है।

इस रेस्टोरेंट को सजावट भी की गई है।

यहां पर बिल्डिंग के ऊपर में एक टंकी भी दिखई दे रहा है जो कि ब्लैक कलर का है।

आलमारी को कांच के मदद से बनाया गया है।

यह एक एयरपोर्ट का दृश्य है।

दुकान के बाहर में एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर पलक श्रृंगार और गिफ्ट स्टोर लिखा हुआ है।

यहां पर एक बेसिन भी दिखाई दे रहा है एवं बेसिंग के नीचे में एक बाल्टी भी है।